सुंदर नजारा है यहां पर बच्चे आर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बच्चे आर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

व्हाइट कलर की शर्ट में नजर आ रहा है उसके आगे बहुत सारे फूल पत्तियां रखी हुई है कुछ फूल येलो कलर के है कुछ पर्पल कलर के है।

बहोत ही सुंदर टेबल नजर आ रहा है।

यहां एक चौतरे के ऊपर भी टेंट सा बिछा हुआ है।

जैसा कि हम आपको दिख रहे हैं यहां पर एक पेड़ भी नजर आ रहा है उसकी तरफ दूसरी तरफ भी पेड़ नजर आ रहा है।

यहा पर हमको बहुत ही प्यारा नजारा देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक वाटर पार्क नजर आ रहा है।

सुंदर सा नजारा देखने को मिल रहा हैं यहाँ पर कुछ सीढ़ियां लगी हुई हैं कुछ तख़्ते बिछे हुए हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा समुंदर दिखाई दे रहा है।

एक महिला दिखाई दे रही है जोकि--